देखने को मिल रहा है वहा पे एक आदमी देखने को मिल--

में लाल रंग का टोपी पहना हुआ है वहां पे हमें भगवान जी का--

हमें यहां पर बहोत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर देखने तो मिलेगा सिलेंडर के ऊपर कुछ रखा हुआ है जिसपे मालूम चलता है कि कितना ऑक्सीजन है।

अलमीरा मे डॉल्स रखा हुआ देखने को मिल रहा है इस उपर मे हमे दिवाल तथा--

ये हमें यहां पे दीवाल तरफदारी देखने को मिल रहा है हमें ए_सी भी लगा हुआ है।

ई में हमें बहोत सारे पत्थर देखने से मिल रहे है नदी के चारों तरफ--

उधर हमें पहाड़ देखने को मिल रहा है नदी में हमें--

इस हाउली हाईवे ने हिन्दुस्तान थर्सलेट इंग्लिश का बोर्ड लगा हुआ हमें यहां पर पोल देखने तो मिल--

और सलार के ऊपर अल्वेस्टर से ढलाईया हो रहा--

का मुर्ति बनाया गया है बहुत सुंदर मूर्ति है उसके अंदर बहुत सारे--

मे यहां पर रोड पे बहोत सारे मोटरसाइकिल देखने से मिल रहे है।

में एक बैरी डेट भी बना हुआ है उसके उपर हमें लाइट भी देखने--

ऐड में हमे जनरेटर ट्रैक्टर देखने--

इन दोनों तरफ हमें बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे।

और यहां पर बटियाँ में खाना खा रहा है उसके पीछे है बहोत सारे पेड़ है पेड़ पे भी बहोत सारे --

देखने को मिल रहा है रैक के ऊपर हम--

देखने को मिल रहा है अंदर में हमें एक बड़ा स्टूल देखने को मिल र--

मुझे यहाँ पर एक गार्डन देखनो को मिल रहा यहाँ पे बहोत छोटे छोटे से चेयर रखे हुए हैं टेबल भीं देखनो को मिल रहा है।

समुंद्र का पानी हमें पूरा काला देखने को मिल रहा है समुद्र के बगल में हमें--

देखने को मिल रहा है उसके पीछे में दीवाल पे बहोत सारी--